और इसके बॉड मे बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे है नीचे--

ये एक बड़ी सी ट्रॉली है यहाँ पर शलाखां बहुत सारी यहाँ पर लोहे के सिट्टम भी हैं।

और यहां पे ऊपर आजू बाजू बड़े बड़े--

ये न्यू यॉर्क सिटी की है और यहां पे झाड़ा भी हैं यहां नारियल हैं छोटे बड़े --

अ यहाँ पे आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं मिन्टरी मैन भी है।

ऊपर आसमान भी दिख रहा है और यहां पे इसके गेट बंद और इसके खिड़कियां भी बनाए गए हैं।

यहाँ पे सिमिट को बनाया जाता है या बड़ी सी पाइप टाकी में सिमिट के फटरों को फोड़ा जाता है।

यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी बहुत शारा शामान है और बड़े-बड़े लेवे के--

सभी यह पे है और जे वशिष्ठ द्वारा खींचा जा लहा है।

और फोटो ले रहे हैं यहां पे लेफ्ट साइड में पाइप के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है।

और यहाँ पे मोबाइल के द्वारा फोटो लिए जा रहे हैं।

ये एक सवेरा डिफेंस एकेडमी यहां पे पोलिस मिट्री में सिलेक्शन किया जाता है यहां पे बाजू--

थैले भी रखे हुए हैं और नीचे टाइल्स भी बिछाया गया है और आजू बाजू झाला भी ।

लोहे के पट्टियों को काटा जाता है ये बड़ी सी कंपनी है और यहां पे बडा सा लोहे का कुलर भी है।

आजू बाजू बड़े बड़े पेड़ भी हैं और पीछे बहोत सारे कालोनी में पार्क दिए गए हैं।

और लकड़ी के शीट्स भी पड़े हुए हैं और ऊपर बारिस के पानी के लिए छोटे से पाइपां भी डाले गए।

यहाँ पे टेबल के ऊपल बहुत सारा शामान रखा हुआ है लेफ्ट साइड में एचमेन का एक लैपटॉप भी एक है।

आजू बाजू बहोत साले दुकाना भी दिख लहे हैं यहां पे दुकान में बहोत सारे लोग भी काम कल लहे हैं।

ये एक स्टेशन हैं ट्रेन का यहाँ ऊपर आसमान दिख लहा हैं यहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई हैं।

बैठने के लिए बेंच भी लगी हुई है आजू बाजू बहोत सारे जाड़ा मिट्टी फटले भी है पहाड़ भी दिख लाहा है बाजू --

बहुत शाले बाजू के फूल रखे हुए हैं और ये बहुत खिले हुए फूल बहुत लाल कलल में।